ये एक टावर का फोटो है जहां से लो लोहे का टावर है।

एक झंडा लहरा रहा है एक लाइट लगी है।

यह आसपास बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं तार दिए हुए हैं ।

ये एक चौराहे का फोटो है जहा पर बहुत सारी गाड़ियां जा रही हैं | उनके ऊपर रंग फैला हुआ है गुलाबी कलर का।

जहा पर कपड़े रखे हैं | तीन महिलाएं अंदर जा रही है | कैमरा लगा है।

ये एक कैन्टीन है जहाँ पर बहुत सारा सामान रखा है।

और भी बहोत सारे सामान रखे हैं फैंटा।

इसमें बहुत सारे पेड़ लगे हैं जो कि लाइट ग्रीन डार्क ग्रीन कलर के हैं इसमें बहुत सारे पौधे लगे हैं जिसमें फूल उग रहे हैं इसकी जाली का रंग ब्लू कलर का हैं।

ये एक वीराना मंदिर का फोटो है जहा पर मंदिर है और सूना हो रहा है।

ये एक चौराहे का फोटो है जहां पर बहुत सारी गाड़ियां आ रही है जा रही हैं ।

इसके ऊपर एक झंडा लगा हुआ है जो की ऑरेंज कलर का है | बहुत सारी बिल्डिंग बनी हुई है कचरा पड़ा हुआ है ।

यहाँ एक हाउस ऑफ चीज़ बय शेफ उज्जवल अकाश नाम से शोप है।

ये एक नदी का फोटो है जहाँ पर बहुत सारा पानी है इसके आसपास बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं घासे लगी हुई है।

घास का कलर लाइट ग्रीन कलर का है पेड़ों का कलर डार्क ग्रीन लाइट ग्रीन कलर का है सनराइज हो रहा है।